पर कुछ बैनर बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं पीछे दीवार पे बहुत सारी खिड़कियां दिखाई पड़ रहीं हैं जो कि बंद है और जो की दीवार ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है ऊपर छत ग्रे कलर की दिख रही है वहाँ पे फैन लगा हुआ है ब्लैक रंग का दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक शॉप दिखाई पड़ रही है यह एक सेलून का पिक है यहाँ पे सामने ऊपर फूलों से सजाया गया है यहाँ पे माला लटकी हुई है जो कि ऑरेंज कलर की माला दिखाई पड़ रही है यहाँ पे साइड में पिलर पे बलून लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

एक अंकल दिखाई पड़ रहे हैं उनके हाथ में कॉपी है और सामने एक रैक लगी हुई है जिसमें बहुत सारी कॉपी किताबें दिखाई पड़ रही है यहाँ पर अंकल ने ब्लू और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है यहाँ जमीन ग्रे कलर की दिखाई पड़ रही है ऊपर एक लाइट लगी हुई दिख रही है यहाँ रेक में बहुत सारी कॅापी किताबें--

--दिखाई पड़ रहा है जो की वाइट रंग का दिख रहा है यहाँ पे एक रेड कलर का क्रॉस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सामने बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।